एक बस हैगी बस का कलर वाइट एंड ब्लैक मैरून है ये काफी ब्यूटीफुल बस हैगी और काफी लम्बी भी हैगी और चौड़ी भी है।

और यहाँ पर पेड़- पौधे है फ्लावर्स हेंगे कुछ लोग बैठे हुए हैं काफी बड़ा पार्क बना हुआ है यहां पर काफी ब्यूटीफुल है ये --

यहाँ एक जिना दिया गया है प्लेटफॉर्म हैं अगर जहां पर जिना दिए गये हैंगो एक व्हाइट कलर की हेंगी जो काफी बड़ी- बड़ी जीने दिए गए हेंगे और साइड मे पेड़ लगे हुए हेंगे।